यह एक बैंक है इसका कलर बैंगनी भी है और पीला भी है।

और यहाँ पर काफी सारे गुब्बारे नजर आ रहे होंगे सफेद व नीले रंग के।

यह एक मंदिर है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है यह सोने से बनी हुई है।

यह स्कूल की बस है | यहाँ पर आपको दो बस नज़र आ रही होंगी और यहाँ पर दो झंडे भी दिख रहे होंगे।

आप को बगल में एक नल दिख रहा होगा और शटक भी दिख रही होगी।

आपको इन ऑटो का कलर हरा व पीला दिख रहा होगा और इन की सीटें चॉकलेटी कलर में है।

यह एक पूल है| इस पूल के ऊपर से ट्रेन गुजरती है| यह पुल ट्रेनों के लिए निर्धारित--

यह एक किला है। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। यह इस के बगल में एक और किला है।